टायर भी रखा हुआ है।

दिर के आगे में लोहे का गेट लगा है।

यह एक नदी है नदी बहुत बड़ी है।

उसको खड़ा रखने के लिए बहुत सारा पाया दिया गया है।

फ़ोटो में बहुत सारे लीची बॉल सजाया हुआ है।

दुकान में बहुत सारा कार्टून है।

दुकान में कुछ लोग भी है।

घर मे ग्रीन कलर का शीशा लगा हुआ है।

तामने में एक सीढ़ी है।

पीछे में कुर्सी और टेबल भी लगा हुआ है।

कुर्सी पे आदमी भी बैठा है।

दरी का रंग लाल है।

यह एक ग्राउंड है ग्राउंड पे घास है।

सामने में टूटा हुआ ईटा भी है।

मायदीद के दीवार का रंग सफ़ेद है।

मस्जिद के आगे में लोहे के खंभे पर एक सोलर लाइट लगा हुआ है।

कमरा में एक बेड लगा है।

और ग्रे कलर का जीन्स पहना हुआ है।

मंदिर में कैमरा लगा हुआ है।

सामने में एक सीढ़ी है।

यह एक पेट्रोल पंप है।

बाइक पर एक आदमी बैठा है जिसने लाल कलर का हेलमेट पहना हुआ है।

बोर्ड का रंग सफेद है।

दीवार का रंग पीला है।

दुकान में बहुत सारे रंग बिरंगे पर्दे हैं।

गाय के गर्दन में एक माला है।

सामने में एक खंभा भी है।

पीछे में बल्ब टंगा हुआ है दुकान में और बहुत सारा सामान है।

दुकान में बहुत सारा मोबाइल है।

कार का रंग ब्ल्यू है।

मकान के ऊपर लाइट भी लगा हुआ है।

सामने में एक पोस्टर भी है।

को लोहे के सिकड़ से टांगा हुआ है।

कार में वायर भी लगा है।

सामने में शीशा लगा हुआ है।

सैलून में टूल भी है।

फक में एक स्टीकर लगा हुआ है।

सैलून में शीशा लगा हुआ हैं दीवार पे फूल टंगा है।

हॉस्पिटल में बहुत सारा खिड़की है।

पीछे में एक बैठने वाला भी है।

सामने में एक बाल्टी है।

सामने में बहुत सारा बाइक है सामने में एक पेड़ भी है।

बिल्कुल लोहे के तार से घेरा भी है।

पीछे में एक दुकान भी है।

दीतमे में पंखा लगा हुआ है।

गैस चूल्हा पर एक कड़ाही है कड़ाही का रंग ब्लैक है।

टेबल पर गिलास रखा हुआ है।

शीशा पे पोस्टर चिपकाया हुआ है। मॉल में बहुत सारा कपड़ा है।

दुकान में एक पलंग भी लगा हुआ है सामने में एक छोटा सा बैग है।